इस फोटो में मुझे सीमेंट वाली ईंटे दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक अच्छी रोड दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे बॉक्स दिखाई दे रहें हैं।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

इस फोटो में मुझे फुग्गों की सजावटें दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे किराने की दुकाने दिखाई दे रही हैं।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

कुछ हत आदमी औरत दिखाइ दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बिजली की तारें दिखाई दे रही--